नदी के ऊपर ओवर ब्रिज बना हुआ है जिसके एं एं एक भाग पे चार व्यक्ति खड़े हुए हैं तीन--

चारों तरफ पेड़ बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं नीचे पानी भरा हुआ है।

और दूर अं टेबल पड़े हुए हैं कुर्सियां स्टूल पड़े हुए हैं छोटे छोटे।

हरे कलर के दो बड़े बड़े बैलून टाइप के अ रखे हुए हैं। परदे लगे हैं।

बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं और टेबल भी हैं लाइटें लगी हुई हैं।

सुबह का अह समय है सूरज निकल रहा है।

सूरज की किरण अ बहुत अच्छी पड़ रही है और हरे हरे हरी हरी घास है।

कलर अ पीले कलर का डिवाइडर हैं।

बट स्टील की रेलिंग है जीने और एक अह फायर अह फायर बुझाने के लिए एक वो लगा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां पे दो व्यक्ति अह खाना खा रहे हैं।

एक व्यक्ति बिल काउंटर पे बिल कटा रहा है।

एक यहां कांच का काउंटर बना हुआ है और ऊपर दीवाल में लिखा हुआ है भुगतान पूरा भुगतान करने पर ही ऑर्डर भेजा जाएगा।

चार इधर अ बाएं बाएं साइड बैठे हुए हैं।

ये मारुति सुजुकी कंपनी अअ कंपनी है एजेंसी है।

इसमें एक अल्टो व्हाइट कलर की और एक डिजाइन पीछे नीले कलर की गाड़ी खड़ी है।

बैग वैग रखी बैग रखे हुए हैं एक बोर्ड गड़ा हुआ है जिसमें लाइटों के लिए प्लग वलग लगे हुए हैं।

बीच में लाइटें लगी हुई है किनारे किनारे दोनों तरफ पेड़ हैं बहुत सारे।

प्लेटफारम को नीचे से अअ कलर किया गया पीले और ब्लैक कलर में।

सपना मैकेनिक का शोरूम है जिसका उद्घाटन हो रहा है बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

ये एक मेहमानों के लिए एक कमरा है जिसपे नाम नाम लिखा हुआ है दीवाल पे।

पीले कलर से दीवार पर पेंटिंग है और किताब कुछ किताबें रखी हुई है रैक पे।

ये एक जिम सेंटर है जहां पे बहुत सारी महिलाएं योगा कर रही हैं।

पल्सर गाड़ी बाहर खड़ी हुई है बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

एक कमरा है जहां एक रैक पे अ बहुत सारे भगवान की मूर्तियां रखी हुई हैं।

ये एक बहोत बड़ा सा हॉल है जिसमें एक चेयर पड़ी हुई है।

यह एक मस्जिद है यहां पे अह बहुत लोग नवाज अदा करने के बाद बाहर खड़े हुए हैं।

एक नेचुरल आइस-क्रीम की दुकान शॉप है जिसमें अ ब्लैक कलर बोर्ड लगा हुआ है और अ नेचुरल अ हरे कलर से लिखा हुआ है।

बीच मे एक अ तलाब टाइप का बना हुआ है।

तलाब है जिसमें कचड़ा कूड़ा फेका गया है।